यह पुल लोहे की बनी है इस पर आदमी इधर से उधर जाते है यहाँ पर ट्रैन भी आती है यहाँ पर फटरी भी है यह लखीसराय स्टेशन काफी सुन --

सड़क है वह सड़क काफी चौड़ी है उस सड़क पर बहुत से गाड़ी खड़ी है।

कुछ आदमी इधर उधर देख रहे है।

इस घर में पैसे की लेन-देन होती है।

यह एक रेल की पटरी है इस पटरी पर ट्रैन आती जाती है।

इस सड़क के कनारे बड़े-बड़े बिल्डिंग हैं ये बिल्डिंग सफ़ेद कलर से पैंट किया गया है।

यहाँ पर बहुत एक छोटी-छोटी गाडी भी खड़ी है।

मैदान है | यह मैदान काफी बड़ा है | इस मैदान में बड़े बड़े पेड़ भी है ।